गाड़ी दिखाई दे रही है जिसके दरवाजे खुले हुए दिखाई दे रहे हैं दो आदमी चक्के की सफाई करते हुए दिख रहे हैं ।

और एक बाल्टी दिखाई दे रही है सफेद रंग की.--

बैठने के लिए एक बेंच लगा हुआ है।

और काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

दुकान के अंदर कुछ सामान दिखाई दे रहा है।

ये एक दुकान दिखाई दे रही है जैसे दुकान के अंदर काफी सारे सामान दिखाई दे रहे हैं खाने पीने की और दुकान काफी बड़ी दिख रही है। हॉलेक --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

ये एक गार्डन एरिया है जहां पे बैठ लोगों के--

ये कोई रेलवे स्टेशन या फिर कोई बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जहां पे काफी सारे--

एक टेबल पर कुछ कप रखी हुई हैं और एक आदमी कॉफी पीते हुए दिखाई दे रहा है।

ये एक लकड़ी की चेयर बनी हुई है।

ये एक सुंदर सा किला दिखाई दे रहा है किला--

ये एक समुंद्र दिखाई दे रहा है समुंद्र में एक बोट --

छोटा सा नौखा दिखाई दे रहा है बोट पे एक आदमी मुझे दिखाई --

एक आदमी फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहा है पीछे काफी सारे लोग देख रहे हैं एक आदमी अपने हाथ में बच्चा लेकर चलता हुआ दिखाई दे रहा हैऔर काफी उजाला है।

स्कूटर रिक्शा चलती हुई दिखाई दे रही है बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है दुकानें दिखाई दे रहे हैं और काफी लोग--

ये एक सड़क दिखाई दे रही है एक वाचमन गेट पे दिखाई दे रहा है और काफी पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं अंदर की तरफ कुछ मकान--